मुझे इस तस्वीर में इंसान दिखाई दे रहा है धनिया दिखाई दे रहा है नींबू दिखाई दे रहा है।

बेंच दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा है फैन दिखाई दे रहा है ग्रीन का तख्ता दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का बस्ता भी दिखाई दे रहा है पोस्ट दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा है।

इंसान दिखाई दे रहा है फूल पॉट दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है।

नींबू दिखाई दे रहा है ओनियन दिखाई दे रहा है।

लाइट दिखाई दे रहा है फूल दिखाई दे रहा है।

हमको यह तस्वीर में एक इंसान दिखाई दे रहा है जो कि वो पैरोट को दिखाई देख रहा है।

सीढी दिखाई दे रहा है घ घर का छत छ ग्रीन है।

टेबल दिखाई दे रहा है और त्रिपाल दिखाई दे रहा है।

रॉड रिबन दिखाई दे रहा है एंट्री गेट दिखाई दे रहा है डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

जूता दिखाई दे रहा है और दो बड़ा सा पेंटिंग दिखाई दे रहा है।

दीवाल दिखाई दे रहे हैं जहां में द हेरिटेज एकेडमी लिखा हुआ है।

बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा वाला गेट दिखाई दे रहा है और कुछ रिसर्च सेंटर टी_पी ।

कार दिखाई दे रहा आसमान दिखाई दे रहा है पोस्ट दिखाई दे रहा है वायर दिखाई दे रहा है।

नदी दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है ग्रॉस दिखाई दे रहा है।